कुछ लोग अपना सामान लेकर वहां से उतर रहें हैं कुछ ट्रैक्टरस सामान को पहुंच रहे हैं यह काफी खुबसूरत और विकसित लगता है काफी खुबसूरत --

और दर्शनार्थियों की बहोत भीड़ है। ये शाम का वक्त है और सब लोग आरती देखने के लिए आए हुए हैं। आरती जहां सब पूजा करेंगे --

श्री राम चाट भंडार नाम की एक दुकान पास में ही बहुत बड़ी बिल्डिंग आस-पास गाड़ियाँ आ जाती है। यहाँ आप ---

अपनी भीड़ भाड़ और चहल कदमी के लिए मशहूर बनारस के एक गली का एक दृश्य है दृश्य काफी खूबसूरत है यहाँ एक वृद्ध अपने बेटे के साथ जा रहा है।

अवसरो को साजोया गया --

बच्चो के आने ले जाने के लिए यहाँ पे बसों की भी व्यवस्था की गयी है।

क ल जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय वाराणसी में स्थित उत्तर प्रदेश में --

यह पंडित किशन महाराज के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली शहनाई और तबला रखा हुआ है।